यहां पर तीन बिल्डिंग टावर दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे दो बाइक दिखाई दे रहीं हैं जो काले कलर और लाल कलर से हैं।

उसके सामने एक ऐना लगा हुआ है।

इसमें पत्थरीली डिज़ाइन डाली गई है।

जो कपड़े रखे गए हैं वो ड्रेसिंग में रखे गए हैं और घड़ी बना के पन्नी में रखे गए हैं।

पीछे की ओर में कुछ बैनर्स भी लगाए हुए है।